सदर अस्पताल गोपालगंज का है आगे में चार चक्का लगा हुआ है एक आदमी मरीज को लेके निकल रहा है इधर बाइक लगल हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है।

पार्क है बच्चा सब घूम रहा है बहुत सुन्दर पार्क है| इधर भीड़ लगा हुआ है इधर झूला लगा हुआ है और यहाँ पेड़-पौधा बहुत अच्छा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है बहुत सुंदर पार्क है।